यह एक पहाड़ का चित्र है।

बाहर दो गाड़ियाँ रखीं गई हैं।

और इस दुकान का नाम श्री श्याम इंटरप्राइजेज है।

एक कॉस्मेटिक की शॉप है जिसमें तरह तरह के कॉस्मेटिक्स पड़े हैं जैसे की नेलपेंट --

पहाड़ी एरिया का चित्र है जिसमें खूबसूरत दो पहाड़ दिख रहे हैं।

यह चित्र एक मंदिर का चित्र है जिसकी बनावट एक किले की तरह है।

गेहुए कलर का किला दिख रहा है और ऊपर नीला आसमान दिख रहा है जो पूरा सफेद और चमक रहा है।

यह चित्र एक डेंटिस्ट के क्लीनिक का चित्र है।

उसके लिए एक कुर्सी भी रखी हुई हैं।

यह चित्र एक बस स्टॉप का चित्र है जिसमें एक बस खड़ी हुई है।

जिसमें एक किचन बना हुआ है और इस किचन में बहोत खूबसूरत फर्नीचर लगा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे गमले रखे हुए हैं और इन गमलों में अलग-अलग तरह के पत्ते और प्लांट्स दिख रहे हैं।

यह एक सामान की दुकान है जिसमें अलग-अलग तरह के सामान रखे हुए है इसमें कुछ चिप्स की --

एक टोल नाका दिखाई दे रहा है उस टोल नाके पर अलग अलग टोल बने हुए हैं।

जिसमें बिल्डिंग का कलर बहोत खराब हो रहा है और इसके पास में एक पेड़ भी दिख रहा है।

इस बैंक में आधा शटर लगा हुआ है।

बंग्ले का चित्र है इस चित्र में--

जिसमें बहोत सारी जिम की मशीन्स --

इस चित्र में एक जिम ट्रेनर भी दिख रहा है।

सूटकेस भी रखे हुए हैं जिनका रंग पीला नीला सफेद और लाल है।

हैं जिसमें एक झरना बह रहा है ऊपर पहाड़ी से।